अ बेदाना है संतरा है सेब है केला केले हैं अंगुरे हैं और बहुत सारे फल हैं और इन फल से लग रहा है यह फल मंडी का सीन है।

एक झोला हुआ एक झोला लगा हुआ है।

ये एक बाजार का सीन है जहाँ पे मछलियाँ बेच रहें हैं और बहुत सारे लोग बहुत ही ज्यादा लोग भरे हुए हैं और सामान खरीद रहें हैं।

फलों मे नारंगी अंगू ल काला अंगूर सेब ओर बहोत सारे फलों नजर आ--